लाल पर्दे से डेकोरेशन हुई है।

इनके बीच में कुछ प्लेट रखी हुई है।

ई रिक्शा खड़ी हुई है एक ऑटो खड़ी हुई है।

शाम श्याम ब खाटू श्याम का पोस्टर लगा हुआ है।

और पीछे दीवार है। दीवार बेकार हो रही है। नीचे एक मेज रखी हुई है।

दो तीन काउंटर रखे हुए हैं काउंटर में कुछ ज्वेलरी रखी हुई है।

जो बोर्ड लग रहा है एक भगवान जी की तस्वीर लग रही है।

टंकी रखी हुई है पानी की।

बहुत सारे फूल हो रहे हैं।

मेज पे दो कॉफी रखी हुई हैं।

यहां एक टेंट लगा हुआ है साइड में बहुत अच्छी डेकोरेशन हो रही है लड़ी लग रही हैं।

कुछ लाइटें बली हुई हैं।

यहां बहुत सारा लकड़ी का सामान रखा हुआ है।

पीछे बहुत सारे पेड्डे खड़े हुए हैं।

और कुछ बच्चे खेल रहे हैं।

नीचे लाल रंग का जला रहे।

नीचे चॉकलेट रखी हुई है।

तीन चार तरह की चॉकलेट रखी हुई है।

पीछे ग्रील लगी हुई है कुछ आदमी खड़े हुए हैं।

दीवालों पे कार्टून वगैरह छपे हुए हैं।

नीचे दीवालो पे टाइल लगी हुई है।

धरती पे टाइल लगी हुई है।

ए एक बहोत बड़ा घर है।

घर के सामने एक गेट लगा हुआ है।

घर पे सफेद रंग हो रहा है।

और सड़क पे टायर छप रहे हैं जिस वाहन चलते हैं।

पीछे कुछ घर बने हुए हैं बहुत बड़े बड़े लगे हुए हैं।

और साइड में एक हरे रंग की चद्दर लगी हुई है।

इन कट्टो को ट्रक में लोड किया जा रहा है।

साइड में एक घर है घर की विंडो है और लाइट लगी हुई है।

ये एक बहोत बड़ा मंच बना हुआ है।

गत्ते का सामान रखे हुए हैं।

पीछे बहोत सारे ठंडे रखे हुए हैं फ्रिज में।

पीछे हाइवै जा रहा है डिवाइडर है कुछ पेडडे खड़े हुए हैं।

नाई ताऊ के बाल काट रहा है एक कुर्सी रखी हुई है कुर्सी पर लीला रंग हो रहा है।

यहां सामने एक वॉशिंग मशीन का पाइप रखा हुआ है बोर्ड रखे हुए हैं फिटिंग के।

और यहां दो कटोरे रखें हुए हैं।

एक टेंपू खड़ा हुआ है एयरटेल फोर जी का बोर्ड लगा हुआ है।

और कुछ रखे हुए हैं दुकान मिठाई रखी हुई है।

साइड में दो औरत झूल रही है।

मोन लगाए हुए हैं और साइड में और जो पिछली दीवार पे कुछ लिखा हुआ है।

बिल्डिंग के सामने पार्क है और बिल्डिंग में बहुत सारे शीशे लगे हुए है।

सामने एक खंबा गड़ा हुआ है।

पीछे लाल रंग के मैट पड़े हुए हैं ऊपर एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ है।

और एक पेड्डे खड़े हुए हैं साइड में कुछ लाल बत्ती लगी हुई है ऑटो जा रही है।